मजदूर काम कर रहे हैं मजदूर लिंटर्स डाल रहे है ये बहुत सारा उनके पास सामग्री पड़ी हुई है।

गार्डन में बैठना बहुत अच्छ होता है।

ये हम देख पा रहे है चित्र जो हम देख पा रहे इसमें ये लिंटर पड़ा है और लिंटर के बाद जो हमारी लाइट्स होते है जो दीवाल के अंदर वाली लाइट्स होती है उनकी पाइप भी पड़े है।

वो अपने ड्यूटी पे वापस आ रहा हो अपनी अगली ड्यूटी के लिए आ रहा हो और एक बाइक हम खड़ी देख रहे हैं एक बाइक हम सामने खड़ी देख --

जिसका प्लॉट होगा वो अपना सामान रखता हुआ यहां पे थोड़ा बहुत जो सामान वह हो सकता है उसके पास दो घर हो तो एक जगह अपना सामान रख दे रहा हो एक जगह अपना रह रहा हो।

ये एक फन सिटी का चित्र मुझे लग रहा है फन सिटी मे एक ट्रैन होती है जिसमे बच्चे बैठते है और वो पूरे फन सिटी मे उनको घूमाती है बच्चे बैठते है उनके माता पिता बैठते है बहुत ही मजा आता है ।

यहाँ हम देख पा रहे है एक चित्र है मैदानी इलाके का उसमें हम पेड़ भी देख पा रहे है और आसमान बहुत सुन्दर लग रहा है और सामने मेरे ख्याल से ईस्ट जावा इंडोनेशिया का चित्र है।

ये एक किताबों की दुकान है यहाँ पे हिन्दू धर्म के जो लोग होते है उनकी किताबें मिलती है ग्रंथ जो होती है।

वो मिलते है और बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई किताब है और उनका कवर बहुत मोटा है जो गद्दी होती है बहुत अच्छी है बहुत बढ़िया।